यहाँ पर एक कुछ पुलिस थाना है और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं पुलिस वाली और पुलिस वाले भी है।

स्टार लगा हुआ है और सांता क्लॉज़ हैं कुछ लोग हैं और बैलून वगैरा लगे हुए हैं और एक जो हैं माइक से कुछ बोल रहें हैं।

यहाँ पर एक लड़का है जो अपनी सेल्फी ले रहा है और जो कि उसका जो बैकग्राउंड है पूरा पीछे का बोहोत सारे पेड़ हैं पहाडें हैं।

बेनर बने हुए हैं और दुकान हैं।

यहां पर एक खेत है जो की खेत में बहोत सारे लोग है।

जो की स्कूल बनें हुए हैं यहाँ पर। काफी बड़ा बना हुआ है और जो की अ रोड भी है यहाँ पर अच्छा ग्राउंड टाइप में और ऊपर आसमान पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है।